घास लगी हुई है ।--

रात का टाइम हो रहा है।

उसकी दीवार में मां बासमती प्राइवेट का बोर्ड लगा है बाहर एक मैदान दिख रहा है पेड़ दिख रहे है ।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

पत्थर दिख रहे हैं बोर्ड दिख रहे हैं खंभे दिख रहे हैं।

में एक बहुत सारी सुविधाएं दिख रही हैं आँख का अस्पताल है ये।

ये एक चोराहा दिख रहा है जिसमें बहुत से पेड़ लगे हुए हैं बाहर रास्ता दिख रहा है जहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं।

चित्र में एक बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत से लोग दिखाई दिख रहे हैं गाड़ियां खड़ी है पेट्रोल डाल रहा है।

चित्र एक मल्टी का दिख रहा है यहाँ पर पीछे बहुत सी दुकाने दिख रही हैं दुकानों के बाहर गाड़ियाँ दिख रही है।

इस चित्र में एक बड़ी सी दुकान दिख रही है जहां पर अलग-अलग कंपनियों के बोर्ड लगे हुए हैं सैमसंग उषा हायर यहां पर बड़ी-बड़ी मशीने दिख रही है।